उंडे फुंडे हम ते कुछ डाला भी छन दिखेण लग्यां जखा मा हम ते एक डारू अमरुद कु डालू छ दिखेण लग्युं अगाड़ी हम ते एक बड़ु पहाड़ छ दिखेण लग्युं जफणा बहोत सारा डाला छ लग्यां बिचम एक गाड भी दिखेण छ लगीं।

जानवर हाथी हिरन छ बणियां अर एंच एक नो भी छ लिख्युं भितर हमते एक सीढ़ी छा दिखेण लगीं जो एंच की तरफ छ जाणी अर दिखेण से यू एक मंदिर कु गेट छ लगण लग्युं।

ये चित्र मा हम ते बड़ु मंदिर छ दिखेण लग्युं जु दिखेण से बहोत पुराणु छ लगण लग्युं।

अगाड़ी एक जगह छ दिखेण लगीं ईं भ्वां फणि कुछ गिटी छन घास छन अगाड़ी कुछ भ्वां फणा बोर्ड छन अर एक बड़ु डालू छ।

ये चित्र मा हमते एक बड़ी होदि कर दिखेण लगीं जैका भितर पाणी छा भेजियूं जो कोजालु पाणी छ लगण लग्युं उंडे फंडे हम ते बड़ा बड़ा डाला छन दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम ते एक बड़ु मंदिर छ दिखेण लग्युं जै का एंच फण हम ते कुछ झंडा छ दिखेण लग्यां ये का भैर बिटि एक बोर्ड छ लग्युं जै पर श्री ऋषब देव दिगम्बर जैन मंदिर श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखण्ड छ लिख्युं।

जौणा हमथे कुछ डाला भी दिखेण च लग्यां किनारा मा हमथे एक मंदिर कर च दिख्येण लग्युं जना काड़ी कुछ डाला छान किनारा में टेंट भी दिखेण च लग्यूं।

पिछाड़ी हम ते भितर एक बड़ु डालु भी छ दिखेण लग्युं भैर फणा एंच फणा कुछ तार छन दिखेण लग्यां अर कुछ बदल छन दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम ते एक पाणी की होदि करा दिखेण लगीं जै पर बहोत साफ़ पाणी छ लगण लग्युं।

एंच द्योरो पर बदल छन दिखेण लग्यां दिखेण से लगदु पहाड़ पर छ लग्युं।